इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि ये एक तालाब है जो कि बहुत गंदा है बहुत तरह के चीजें जो कि इस तालाब के पानी में गिरी हुई हैं।

जैसे की आप देख रहें हैं यहाँ पर आनंदधारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसियल द्वारा झंडा फहराया जा रहा है ।

यह एक कमरे की फोटो है यहाँ पर दीवार घड़ी जो कि बहुत अच्छी लग रही है।

यहाँ पर देखने से लगता है की ये एक पार्क है और यहाँ पर एक आदमी जो कि यहाँ बैठा हुआ है वो योगा कर रहें हैं ।